एक दीवाल घड़ी लगी है सितारो से कमरे की सजावट हुई है।

एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है जिस पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविधालय जगदलपुर छतीशगढ लिखा हुआ है।

ये किसी शादी की फोटो है जिसमे एक बच्चा साफा बांधकर पिले कलर की शर्ट और नीले कलर का कोट पहने हुए खड़ा है।

कलर के कुछ व्यायाम करने के उपकरण नजर आ रहे है एक बोर्ड पर राणी की तस्वीर बनी हुई है।

दो मोटर साइकल दिखाई दे रही है।

एक रेलवे स्टेशन की फोटो है जिसमे रेलवे ट्रैक नजर आ रहे है।

यह राजकीय बाघला आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय चुरू की तस्वीर है।

एक दीवाल पर वोलपेपर लगा हुआ है मोबाइल का--

हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है लाइट्स दिखाई दे रही है।